बिल्डिंग है और पेड़-पोधे हैं कुछ गाड़िया भी लगी हुई हैं और मैदान में काफी कचरा है जो कि मैदान को साफ रखना चाहिए।

और उससे एक सा बॉडी मास भी नही बनता है शरीर को और शारीर काफी लचीलापन होता है इसे देखने में काफी आकर्षक लगता है।

यह बैंक लगभग हर जिला में हरेक चौक चोरह पर तकरीबन इसका ए.टी.एम और --

शरीर काफी सुडौल और आकर्षक लगता है देखने मे जो कि काफी अच्छा भी लगता है शरीर सुडौल देखने में और अभी के समय मे हर नौजवान जो है जिम जाना --

हल है.जहां पर की जो कि फ्री होम डिलीवरी भी यहाँ पे भेज नॉन वेज और सारे बिरयानी एयरटेल ऑफिस के सामने जहानाबाद का ये --

शोरूम का ये वैटिंग एरिया है जो की सामने कुछ कपड़ा का दुकान शूज़् दिख रहा है उधर भी कुछ कपड़ा का दुकान है। सभी लोग यहां इसमें खरीदारी कर रहे है और ऐसे-ऐसे मॉल में अभी काफी ब्रांडेड भी मॉल होते हैं।